ये किसी कोचिंग संस्था का तस्वीर लग रहा है यहां पे लिखा हुआ है फास्ट ट्रैक कॉम्पिटेटिव स्कूल ।

यहां पे कुछ कार्यक्रम हो रहा है। ब्रेच खाली लग रही है एक आदमी है जो कि स्टेज पे माइक पर कुछ बोल रहे हैं।

एक मालगाड़ी की तस्वीर लग रही है मालगाड़ी काफी लंबी है उसके बगल मे एक टावर टाइप का लगा हुआ है।

ये किसी शादी वादी के लिए तैयार किया जा रहा है यहां कोई आदमी नजर नहीं आ रहा एक भी--

यह प्रार्थना सभा चल रही देख के शादी का माहौल लग रहा है या कोई अच्छा कार्यक्रम का माहौल लग रहा है।

ये एक मटन की शॉप लग रही है यहाँ पे एक गल्ला है जिसमें की पैसे रखते हैं उसके बगल में एक --

इसके बगल में एक लकड़ी का कुछ बना हुआ है।

देवी देवता का अह मूर्ति है वहां पे लोग अंदर घुस रहे हैं एक आदमी है जो कि बाहर से फोटो क्लिक कर रहा है।

पत्थर की गुफा है ये काफी प्राचीन काल की--

कोचिंग में बच्चे अच्छे अच्छे शिक्षा ले ग्रहण करने के लिए आते हैं कोचिंग में हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है।